मुझे एक लेंटर दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है लाल रंग का छत है और साथ वाली बिल्डिंग का--

कोई यहां पर हॉस्पिटल का कोई कैंप लगा हुआ है और यहां पर डॉक्टर साहब बैठे है और यहां पर--

ग्रीन ऑल टाइप कलर्स के फूल दिखाई दे रहे है और पीछे--

की गई है कृष्ण भगवान द्वारा और मुझे हनुमान जी भी नजर आ रहे हैं और साथ में--

मैन रोड के साथ है और यहां पे एक ऑल्टो कार ।

ये ब्रिज यहां रोड क्रॉसिंग के लिए बनाया गया है।

और मुझे यहा पर गाड़ीयां दिखाई दे रही है बहोत सारी।

मुझे इस वक्त एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रहीं हैं जो की रोड हेड के साथ हैं और यहाँ पर मुझे--

पाच सात गाड़िया दिखाई दे रही है और--

चार पाइपे राउंड सर्कल में है और जो राउंड सर्कल में पाइप है उसमें--

टाइप यहां पर स्टैंड पर खड़े हैं और कुछ लोग इसे देख रहे है बड़ी गौर से।

मुझे इस वक्त दुकान की एक शेल्फ दिख रही है जहां पर--

ए ओ की बिल्डिंग यहा दिखाई दे रही है और साथ में भगवती ज्वैलर्स का भी बोर्ड इसपे लगा हुआ है।

तीन टेबल दिखाई दे रहे तीन टेबल के साथ--

चॉकलेटी कलर का फाइव सीटर सोफा सेट अ सामने दिखाई दे रहा है और साथ में और भी अच्छे--

एक और ट्रेन पीछे दिखाई दे रही है और साथ में बिल्डिंग है और यहां पर ट्रेन के ऊपर से जाने के लिए एक रास्ता भी यहां पर दिया गया है।